इस फोटो में एक गाछ के नीचे एक व्यक्ति हैं जो खड़ा है और पानी पी रहा है लेकिन यह गाछ मे कलरफुल दिख रहा है इसलिए बहोत अच्छा लग रहा है।

और मसाला है बहुत सारा मसाले है। बहुत सारे ब्रांडेड मसाले है। कई तरह के चीज़े है। बोहोत अच्छा लुक आ रहा है। छोटा दुकान है लेकिन अच्छा है।

इस फोटो में हमारे तरफ हमारे तरफ जो यज्ञ होता है उस यज्ञ में इस तरह के कई जगह फोटो बनाये जाते हैं।

जहाँ बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और इसी को अपार्टमेंट कहते हैं | अपारमेन्ट का खासियत होता है की उसका बेसमेंट बनाया जाता है | बेसमेंट में भी रहता है बहुत सारा चीज़ और रोचक लग रहा है काफी सुन्दर है होना भी चाहिए अपार्टमेंट बनना भी चाहिए ।

फोटो को देख के उतना कुछ तो समझ में नहीं आता है लेकिन हाँ ये फोटो दूर से देखने में बड़ा सुन्दर लगता --

ये एक मछली का मार्केट है बहुत सुन्दर --

यह एक काम का ही फोटो लग रहा है जिसमें एक बूढ़ा बाबा निचे काम कर रहें हैं। एक बच्चा ऊपर में कुछ सेट कर रहा है। हमको लगता है की ये रस्सी का कोई खाटी-ऊटी बना रहा है जिसमें ये लोग मेहनत कर रहें हैं। इनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। बहुत अच्छा।

ये लिखा हुआ होटल कृष्णा कृष्णा होटल है जहां ए.सी. का सुविधा है कूलर का सुविधा है और हमको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है इस अपार्टमेंट में लाइट का सुविधा है जो कुछ भी है बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा है।

लखीसराय का फोटो है और ये बहुत ही कहिये एक अद्भुत जगह है जहाँ लोगो को ज्ञान मिलता है लोग सीखते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं जानते हैं।

उसमें गांवों से भी बहुत सारे लोग जाते हैं और हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट उठाते हैं। बहुत अच्छा लगता है बहुत बढ़िया।

होता ये है रौचक फोटो तभी ना बनता है जब लोग एक साथ खिंचाते है।